जिसमें चट्टानों के बीच से पानी गिरता हुआ नजर आ रहे हैं नीचे कुछ लोग नहाते हुए दिखाई दे रहे--

सामने एक बड़ा व्हाईट कलर का बोर्ड नजर आ रहा है जिसमें ब्ल्यू रंग से शांति सरोवर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

लाल रंग की दिवाल में कुछ बोर्ड बना हुआ है आइसक्रीम का बना हुआ।

व्हाइट कलर के टेबल में डिजाइन बना हुआ है एक बड़ा सा ग्रे रंग का--

सामने नीले रंग जा के बोर्ड में एच_डी_एफ_सी बैंक लिखा हुआ नजर आ रहा है।

व्हाइट कलर के खंड बने हुए है सामने टी_वी नजर आ रही हैं।

बिल्डिंग के बीच बीच में बहोत बड़े बड़े पेड़ लगे हुए नजर आ रहे हैं।

एक तेल का पैकेट दिखाई दे रहा है काले रंग की स्कूटी नजर आ रही है नीले रंग का शटर दिख रहा है बाजू में एक बोर्ड लगा हुआ--

दिखाई दे रहा है जिसमे कप काँच का ग्लास टिशू पेपर स्टैंड नजर आ रहा है।

यह होटल नजर आ रहा है वाइट कलर के टेबल दिखाई दे रहे हैं भूरे रंग के सोफे नजर आ रहे हैं।

सामने व्हाइट और नीले रंग का दिवाल दिखाई दे रहा है बांस से क्रॉस बना हुआ का डिजाइन नज़र आ रहा है भूरे रंग का टेबल दिखाई दे रहा है।

साइड में लोहे की खिड़की दिखाई दे रही है ब्लैक कलर की--

सामान नजर आ रही है अंदर दुकान में बहुत सारी बोरी और तेल के डिब्बे नजर आ रहे--

सामने व्हाइट कलर के बोर्ड में नीले रंग से रायपुर इंस्टीट्यूट लिखा हुआ नजर आ रहा है बहोत सारे--

एक आदमी जाता हुआ नजर आ रहा है साइड में बहुत बड़े बड़े पेड़ लगे हुए नजर आ रहे हैं।

कांच के खंड बने हुए है जिसमें बहोत सारे कुछ समान नज़र आ रहे है एक फ्लावर दिखाई दे रहा है कुछ बैग नज़र आ रहे है।